पिंक कलर में ब्लू बलून्स हैं ब्लू ऑरेंज बैग वगैरह-- एक वेटर दिख रहा है और कुर्सी वगेरह सब है।